यहां एक बहुत सी बड़ी बिल्डिंग है यहां पर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं बहुत सारी गाड़ियां और बिल्डिंग भी यहां पर बहुत बिल्डिंग है।